यह दुकान कहां है मुझे सामान लेना है और राशन वाशन खत्म हो गया है भैया।

हल्द्वानी भईया एक चीज़ फील करी तुमने की ये पहले जो होती थी वो होती थी सीमेंट की और अब देखा अब लकड़ी की है और ये लोहे की है लोहे की है।

पेट्रोल वाला पेट्रोल ही इधर से उधर पेट्रोल पहुंचाता है इस काम आता है यह पता चला --

क्रिकेट खेलना चल रहे हैं वासुदेव पर खेलेंगे वहीं गुरुद्वारे के पास वहीं बैठेंगे आराम से और बड़े वाले भैया को बुला लेना छोटे वाले भैया को भी बुला लेना।

यार यह एयरपोर्ट है क्या है यह एयरपोर्ट तो नहीं लग रहा भैया ये --

बोहोत सारे जने खेल भी रहे हैं बोहोत सारे जने खेल रहे हैं भैया को बुला लो यहीं खेलेंगे अपन भी।

की तबियत ख़राब हो गयी थी तो उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया लेकिन मैंने वहाँ देखा वहां पे जनरल वार्ड भी थे।

कभी खिचड़ी मिलती थी कभी दूध मिलता था कभी दलिया मिलता था।